बस है जो बंदीपुर टाइगर जर के नाम से है इसके अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति बा--

पड़े हुए जो काम कर रहे हैं इसमें कुछ बॉक्सेस कुछ--

अब्बन उड़े रखा हुआ है उनके पास ही में एक ल--

यह एक तालाब है जो काफी बड़ा--

और को एक सरिए की तरह चला रहा है आसपास कुछ दूर दूर दूर--

यह एक रेस्टोरेंट है जो काफी अच्छा सजा हुआ है बीचों बीचे सड़क के आसपास कुछ--

वही रेस्टोरेंट उपर एक बडिया एक निकल रहा है।

यह एक गोड गोडाउन है जिसमें कुछ फर्नीचर का सामान रखा हुआ है इसमें कुछ वाइट कलर के बॉक्सेस हैं।

यह एक घर है जिसके बारे लोहे का गेट लगा हुआ--

रेले लगे हुए जो लोहे की है आप पास कुछ और मकान बने हुए है।

यह एक कॉर्परेशन बैंक है जिसके बाहर एक व्यक्ति हेडमेट लगाकर गाड़ी से निकल रहा है।

कुर्सिया रखी हुई है कुछ फर्नीचर का सामान रखा हुआ--

यह एक डॉक्टर का क्लीनिक है जो रिसेप्शन --

जा रहे हैं कुछ पिलर लगे हुए जो काफी मात्रा में है ये डिस्टिक बा--

उस एसो सोसाइटी के नाम से लाइब्रेरी है जिसके बाद--

यहां एक सड़क के बीच एक छोटा सा तारा बना हुआ है वही पास में--

यह एक पार्क है जिसमें काफी संख्या में बच्चे खेल रहे हैं पार्क के बीचों बीच एक पानी का--

ए एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके बाहर एक काफी बड़ी सड़क है उसके बाहर कुछ गाड़ियां--

यह एक कार शोरूम है जिसमें कुछ कार रखी हुई है जिनकी कुछ सर्विसें चल रही है एक कार एक--

दुकान के बाहर एक फोर जी का लोगो लगा हुआ है।

यह है एक कटिंग की दुकान है जिसमें एक व्यक्ति कटिंग करवा रहा है वहीं कुछ कुर्सियां रखी हुई है जिस पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

सामने एक शीशा लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ बैलून लगे हुए है कुछ कुर्सियां रखी हुई है।